खड़े हैं इनमें से कुछ आदमी और कुछ औरतें--

और उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है सामने एक एंबुलेंस खड़ी है।

यहां पर कुछ लोग खड़े हैं।

और कुछ झंडे लगाए गए हैं यहां पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

यहां पर सामने एक दुकान है।

वर्कशॉप के बाहर दो गाड़ियां लगी हुई है।

यहां पर सामने एक घर है।

और यहां पर एक टी_वी लगाया गया है।

यहां पर सामने एक घर हैं।

यहां पर सामने एक बिल्डिंग है।